यहां हमे कुछ स्कूल के बच्चे दिख रहे हैं उन्होंने गुलाबी कलर के शर्ट ग्रे कलर का पैंट और काले कलर के जूते पहन रखे हैं।

बिजली के खंभे के ऊपर भी एक केबल है।

सामने एक दीवाल हे जो की ग्रे कलर की हैं।

ऊपर एस.एस.सी. सी.जी.एल. लिखा हुआ है।

चार व्यक्ति है जिसमें से एक व्यक्ति ने सफेद कलर का शर्ट और सफेद और ब्लू कलर की धोती पहन रखी है।

यह एक पुराने रेलवे स्टेशन ऑफिस जैसा लग रहा है जिसमें गुलाबी कलर की बॉर्डर है।

हमारे सामने एक बुद्ध की मूर्ति है जो की गोल्डन कलर की है।

हमारे सामने एक अजंता डेयरी और बेकरीज है।